overview and installation of git पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: version control system git और उबन्टु लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर git का संस्थापन
इस tutorial के लिए आपको एक कार्यकारी internet connection की ज़रुरत होगी
आपके पास ubuntu लिनक्स या windows operating सिस्टम्स में से कोई एक होना चाहिए
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको उल्लिखित किसी एक operating systems के साथ परिचित होना चाहिए
पहले सीखते हैं vcs यानि version control system क्या होता है
version control system एक बैकअप system की तरह होता है
documents computer programs और web sites में बदलावों का संचालन करता है
यह समय के साथ जो कुछ आपने किया है उसका historical record देता है
vcs को revision control source control और source code management scm से भी जाना जाता है
vcs के कुछ उदाहरण rcs subversion और bazaar हैं
आगे हम git के साथ शुरू करते हैं
git distributed version control सॉफ्टवेयर है
यह free और open source सॉफ्टवेयर है
यह एक file या file के set में किये गए बदलावों का track रखता है
यह बनाने वालो को एक साथ काम करने की अनुमति देता है
यह projects के संस्करणों को संचालित और संचित करता है
यह project के progress यानि प्रगति की history को ट्रैक करने में मदद करता है
git की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:
हम वापस जा सकते हैं और अपने काम के पिछले संस्करणों को वापस प्राप्त कर सकते हैं
हम सारे बदलावों की पूरी history देख सकते हैं
git द्वारा दिए git सुझावों को प्रयोग करके समस्याओं conflicts को आसानी से हल किया जा सकता है
अगर data खो data है तो यह किसी भी client repository से पुनः संचित किया जा सकता है
git निम्न के द्वारा उपयोग किया जा सकता है: * programmers web developers project managers writers लेखकों और अन्य
* कोई भी जो संस्करणों को track करने के लिए text files शीट्स डिज़ाइन files drawings आदि के साथ कार्य करता हो
* लोग जो एक गतिविधि या project पर सहयोग से कार्य करते हों
अब देखते हैं git कैसे कार्य करता है
git वास्तव में पूरे project का snapshot संचित करता है
snapshot उस क्षण की सारी files की picture लेने के समान ही है
अगर कुछ files में कोई बदलाव नहीं है तो git उन्हें दोबारा संचित नहीं करता है
यह उन्हें पिछले संस्करणों से links करता है
विफलता के समय data snapshot से दोबारा संचित किया data है
अब मैं इस श्रृंखला में कवर हुई कुछ विशेषताओं की झलक दिखाती हूँ
git के बुनियादी commands
git checkout command
git का निरीक्षण और तुलना और
git में tagging टैग करना
इस श्रृंखला में हम निम्न के बारे में भी सीखेंगे: git में ब्रान्चिंग ब्रांच करना ब्रांचेज़ उपखण्ड को मिटाना और मर्ज करना स्टैशिंग और क्लीनिंग
git ubuntu सॉफ्टवेयर center प्रयोग करके ubuntu लिनक्स पर संस्थापित किया जा सकता है
ubuntu सॉफ्टवेयर center पर अधिक जानकारी के लिए इस website पर लिनक्स tutorials को देखें
मैंने अपने system पर git का संस्थापन पहले ही कर लिया है अब मैं इसे प्रमाणित करती हूँ
terminal पर जाएँ और type करें: git space hyphen hyphen version और enter दबाएँ
हम प्रदर्शित git की संस्करण संख्या देख सकते हैं
इसका मतलब है git सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
आगे windows os पर git संस्थापित करना सीखते हैं
अपना web browser खोलें और www gitscm com पर जाएँ
बाईं तरफ के downloads link पर जाएँ
windows पर git download करने के लिए windows icon पर click करें
save as dialog box खुलता है save file button पर click करें
संस्थापक file default downloads folder में downloaded की जाएगी
git संस्थापित करने के लिए exe file पर double click करें
प्रदर्शित dialog box में run पर और फिर yes पर click करें
अब next पर click करें general public license पेज में next पर click करें
default रूप से git programs files में संस्थापित होता है next पर click करें
हम संस्थापन के लिए घटक components चुन सकते हैं
additional icons checkbox पर click करें
फिर next पर click करें दोबारा next पर click करें
यहाँ आप git commands को रन करने के लिए विकल्प चुन सकते हैं
मैं use git bash only चुनूंगी और next पर click करुँगी
मैं इस विकल्प को default ही रखती हूँ और next पर click करती हूँ
git संस्थापित हो रहा है यह आपके internet की speed के आधार पर कुछ समय ले सकता है
संस्थापन पूर्ण करने के लिए finish button पर click करें
अब git release notes अपने आप खुलता है मैं इसे बंद करती हूँ
आप अपने desktop पर बना हुआ shortcut icon git bash देखेंगे खोलने के लिए इस पर doubleclick करें
वैकल्पिक रूप से आप start menu>> all programs>> git पर click कर सकते हैं और फिर git bash पर click कर सकते हैं
अब git bash खुलेगा
यह git की संस्थापित संस्करण संख्या दिखाता है
अतः हम जानते हैं कि git सफलतापूर्वक संस्थापित हो गया है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: version control system git और उबन्टु लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर गिट का संस्थापन
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है